उम्म एक इस नहर के अंदर डुबकी लगा रहे है। ये गंगा जल है और ये जो भोले है ये जल भर कर लेकर जा रहे हैं। ये भोले जल भरकर ले जाते हैं और ये मंदिर पर चढ़ाते है।

ओलर और आदर्श चौधरी चलाते हैं जिम को यह चौधरी फिटनेस पॉइंट है और इसकी टाइमिंग --

मतलब जो इसकी नाई काट रहा मतलब नाई जो इसके बाल काट रहा था।

हॉस्पिटलों में जो एक वो होता है।

बोला जाता है मतलब बोला जा नहीं सकता बोला जाता है।

बहुत ही बड़ी होती है बहुत ही बड़ी-बड़ी नहर होती है।

और फर्ज जो के जरूरी होता है।